दीवार सामने और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहोत सारी तस्वीर भी छपे हुए है ऊपर में छोटे-छोटे झंडे टंगे हुए है।